यहां पे मुझे एक बैग नजर आ रही है।

और मुझे एक यहां पे छपरा दिखाई दे रहा है।

यह राजस्थान के बीकानेर जिले का देशनोक हैं।

और काले रंग के इसके पिल्लर दिखाई दे रहे है और इसका नाम है मदनी मस्जिद।

और यहां पे एक बाहर गाडी भी खड़ी है।

कुछ बच्चे हैं जो योगा भी कर रहे हैं और झूला भी है और एक आदमी है जो दौड़ कर रहा है।

यहां पे मुझे लग रहा है जैसे की बाढ़ आई हो और यहां पे मंदिर पे महिलाएं --

टेबलें रखी हुई है खाना खाने के लिए और दो आदमी एक आदमी फोन पे बात कर रहा है और एक गुटखा खा रहा है।

और यहां पे एक रिक्शा भी नजर आ रहा है और एक खंभा भी नजर आ रहा है और यहां पे एक --

और एक आदमी भी नजर आ रहा हैं।